इ फाइव स्टार होटल है।

और छुट्टी रहता है सब घूमने जरूर जाए।

ये बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है पता नहीं कहां के है यहाँ अन्नपूर्णा बस लगल है।

मैजिक लगल है मोटर साइकिल वाला भी है सब तेल लेवेल आवा है यहां पड़ी तेल लेके जाके ओकर बाद में सभी यात्री लोग के पहुंचावा के जहाँ जहाँ--

के.के.एम. कॉलेज के बैकग्राउंड हेय इ की यहां पर सब दौड़ो हेय डिफरेंस के तैयारी करवा लो सब फौजी बने ले बहुत कोय फिटनेस के लिए भी दौड़ो हेय इ सब।

आसमान बहुत नीला है और ठीक है सब फील्ड भी साफ-सुथरा है यहाँ पे गार्ड बगेरा आवा हय साफ केर के चल जाय हेय।

सब तो अपने से सफाई भी करबाए सबके देखभाल करल जाय हेय अच्छे से---

इ जम्मूई के स्टेशन ने हेय कहीं और के हेय यहाँ बहुते आदमी आवा हेय जाय हेय सब अपन --